और बिल्डिंग के बाहर बहोत से वाहन खड़े हुएं हैं यह बिल्डिंग हॉस्पिटल है और यहाँ बाहर की ओर एंबुलेंस भी खड़ी हुई है।

यह एक रोड है इस रोड पर बहुत से वाहन चल रहें हैं और यह रोड चौबीसों घंटे --

यह एक डेरी पार्लर है जिसका नाम विशाखा डेरी पार्लर है इस डेरी पार्लर --

कुछ पानी में इकट्ठा हो रखा है यहाँ से बहोत से पहाड़ व हरे-भरे पेड़-पौधे दिखाई देते हैं यह बहोत ही--